ये दुकान जैसी लग रही है यहाँ पे उम्म नीचे महिलाएं ए कुछ बिछा के सब्जी बेच रही है इधर देखिए।

ये देखिए यह नीली कलर की जो साड़ी पहनी है वाइट मे जो महिला बहोत सादगी सी दिखाई दे रही है जो कि --